कोई डस्टबीन है कोई थैला है रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है‌।

इस किनारे में नाव लगी हुई है।

यह एक कॉलोनी है कॉलोनी से कच्चा रोड गया है।